यहाँ पे एक गार्डन बना गार्डन में काफी सारे पेड़ लगे पेड़ काफी छोटे दिखाई दे रहे है पेड़ की कटिंग अच्छी दिखाई दे रही है यहा पे कुछ लोग नजर आ रहे है यहाँ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे पेड़ काफी बड़े नजर आ रहे।

पहाड़ दिखाई दे रहा पहाड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे पहाड़ में कुछ पाइप नज़र आ रहे यहां पे कुछ लोग नज़र आ रहे यहां पे काफी सारे घर दिखाई दे रहे यहां --